बहुत सी हरियाली है पेड़ दिखायी दे रहे है और घर भी दिखायी दे रहे है।

इस चित्र में देख सकते है की यह बहुत से बॅनर दिख रहे है पौधे दिख रहे है।

इस चित्र में आप देख सकते है की बहुत से लोग पूजा कर रहे है।

हरियाली है और पेड़ लगाये गये है पेड़ के बीचो बिच समंदर है और नीला आसमान है।

जिससे मालुम चलता है की बॅनर लगाया गया है।

चित्र मे आप देख सकते हे की एक समुंदर है और एक आदमी बड़े पत्थर पर बैठा हुआ है।

और पीला आसमान भी है हर जगह हरियाल --

चित्र मे आप देख सकते है की बहुत से लोग है और लाइट चमक रही है।

और लोग भी और बड़े बड़े बेनर्स भी और एक पुरानी बिल्डिंग भी दिख रही है।

और बहुत से पुस्तके रखी गई है और रंग बेरंगे फूल भी है।

पुस्तके है और गाड़िया भी है।

इसमे चड़ रहे है बहुत से लोग हे और पेड़ है और नीला आसमान--